औअर पूजा करने वाला थाली है दीया है।

और एक जेंट्स और बहुत --

अम डिब्बा में बिस्किट है।

कुछ आदमी खड़े हैं। कुछ आदमी बैठे हुए हैं। लेडीज भी हैं। जेंट्स भी हैं।

गुरुकुल कोचिंग सेंटर --

अम ये यहाँ पे एक अ लेडीज बैठी हुई है।

गेट के ऊप एक बहुत बड़ा सा गेट है।

के नीचे लिखा हुआ है परिकर्मा।

यहाँ फील्ड है एक --